बहुत बड़ा-सा गार्डन है खबसूरत गार्डन | इसमें पेड़-पौधे बहुत अच्छे-अच्छे लगे हुए हैं| एक झुला है उसमें फूल लगा हुआ है ।

और एक इन्डे हैं यहाँ पे एक अथी है।

मोर लग रखा है उसके ऊपर नीचे दिवाल है छेद-छेद वाला देवा--

एंबुलेंस का जो हरा कलर का चदरा चढ़ा हुआ है नीचे है कोटा पत्थर लगा हुआ --

यहाँ देखिये एक मकान बन रही है| वहाँ पर देखिये सेंट्रिंग हुआ है अनेको बॉस लगे हुए हैं जिसमें बहोत ही बॉस लगा हुआ है।

उ ऊपर जो बच्चे वाला भी साइकिल होता है वो भी है| जो सबसे बच्चा होता है उसको गुड़काने वाला वो भी साइकिल है इसमें |